मे परिवार के साथ रेहना चाहेंगे यहां पे रेह सकते हैं।

ये है आयुर्वेदिक दवाई का दुकान है यहां पे आयुर्वेदिक की जितनी सामान है जड़ी बूटी दवाई यहां पर मिल जाती है हम लोग ले सकते हैं।

ये एक स्टडी के रूम है बच्चों का इनके के लिए यहां पे शिक्षा सिखाया जाता है।

यह बहोत पुरेने जमाना का है पहाड़ के ऊपर जाने के लिए पुराने जनाने में बना हुआ सीढ़ी दिखाई दे रहा है इस सीढ़ियों से धीरे धीरे चढ़कर हम ऊपर पहुंच सकते हैं।

ये है जनरल स्टोअर्स है। हर कोई जो लिस्ट कर ले वो सामान यहां पे मिल जाता है जो भी चाहिये आपको चावल आटा रोटी--

ये एक जिम है हर कोई जिम जॉइन करना सेहत के लिए अच्छा है इसके लिए यहां पे बहुत सारी का लगा रखा हुआ है यहां पे --

ये है झानेगी डिजिटल कलर लागे यहां पे एक फोटो की फोटो प्रिंटर निकाल सकते है कलर प्रिंट आउट --

तो वे ये फ्रेम करते हैं कप में प्रिंटआउट निकालते हैं कलर प्रिंटआउट निकाल सकते हैं।

ये है खेती है इन खेतों मे इतनी सुंदरता फूला हुआ लगा हुआ है जैसी उसको टॅम से आयेगा बहोत सुंदर दिखेगा ये फूल लहरा--

ये है गंगा हरिद्वार जाने का रास्ता ये मिल जाता है व गंगा नदी इतनी सुंदर तरह दिखती हैं।

ये है सिटी सेंटर सलून यहां पे ब्यूटी के रिलेटेड जो भी काम किया जाता है।

बेहतरीन गाड़ी है इसमें कही भी जाना है हम लोग जा सकते हैं किराया भी कम है जो भी जाना चाहेंगे पास का दूर इसमें जास--

जो भी कंप्यूटर कोर्स लेना चाहते हैं सीखना चाहते हैं यहां पे जा के आराम से सीख सकते हैं बहुत अच्छे से सिखाया जाता है।

इसको कहते हैं जिलेबी इतनी स्वादिष्ट है।

आपका स्पीकर थ्रू बहुत वेस्ट बेहतर क्वालिटी किया--